यहा रोड पर दो इंसान जा रहे है यहा दो बाइक भी खड़ी है रोड के आगे वाली बिल्डिंग मे फेड्रल बैंक अ-ह है।

यह एक प्रदशीनिय ठिकान लग रहा है यहाँ चट्टान चट्टान दिखाई दे रहे है बहोत सारे लोग घूम रहे है।

देख रहे है कि ई यहाॅं क्या-क्या है? ऐतिहासिक वस्तु दिखाई दे रही है।

और यहां एक इंसान भी स-स सजाता हुआ सब हॉल दिख रहा है।

यह फोटो नीचे से लीया हुआ है ऐसा लग रहा हैं उसे उसके आगे का उसे पानी के आगे--

यह कपड़े की दुकान जैसे मतलब शादियों के कपड़े की अ अ दुकान दिखाई दे रही हैं।

तीन पेटियां दिखाई दे रही है उसके पीछे शॉप्स यानी की दुकान--

मधुपुर नगरपालिका ऐसा इस छोटे से मतलब कोलार घर में दिखाई दिया है उसका छप्पर--

या बहुत सारे छात्र है पढ़ रहे है यम यह एल सी डी यानी कंप्यूटर कंप्यूटर पर पढ़ाया जा रहा है टी वी पे--